खड़े हुए हैं और बाहर की तरफ--

ये एक रेस्टोरेंट है एंड कॉफी बार है जहां पर कॉफी वगैरा मिलती है।

काले रंग की फोटो लगी हुई है सामने कुछ लोग भी खड़े हैं।

तबला बजा रहा है और कोई यहां पर बाजा बजा रहा है सामने एक व्यक्ति बैठा है जो की--

उसके पीछे एक बहोत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है जिसपे की--

जोकि पारक की तरफ देख रहा है सामने ही एक लाल कलर की बिल्डिंग है।

अह यहां पर करवा रही हैं।

क्योंकि बहुत पुलिस की गाड़ियां खड़ी हुई हैं और उसी के साथ कुछ लोग भी खड़े हैं सामने कुछ खिड़कियां भी दिखाई दे रही हैं जोकि यह भवन की खिड़कियां यहां पर लग रही हैं।

और यहां ज शोरूम के ऊपर बहोत सारी लाइटें लगाई गई हैं जो कि बहोत ही प्यारी लग रही हैं।

यह एक स्विमिंग पुल जहां पर दिखाई दे रहा है जो की बहोत ही अच्छा लग रहा है।

उसी के साथ सामने एक एल_सी_डी भी लगी हुई है।

साथ में कुछ कुर्सियां भी पड़ी है जो कि खाली पड़ी है।

उसके साथ ये एक हरे रंग का कूड़े वाला--

आसमान का जो व्यू है वो बहोत ही अच्छा यहां से दिख रहा है।

अह ये बहुत ही बड़ी किराने की एक दुकान है।